सामने रेड एंड पर्पल साड़ी--

जहाँ पर के शेड है।

और पेड़ लगे हैं बहोत सारे आदमी हैं।

एक गैरेज हैं जहां पर एक गाड़ी है।

कुछ फोटोज भी क्लिक कर रहें हैं।

इस पिक्चर में एक ढाबा दिख रहा है।